यह एक इंडियन गेस्ट हाउस है गो स्टार के नाम से है न्यू इंडिया गेस्ट हाउस है यहां पर--

यात्री लोग बैठने के लिए बस मे जा रहे है एक बस सफेद है एक बस हरी एक बस लाल है और बसे यहां पे खड़ी हुई --

ट्रेन की पटरी भी है और वहां पर एक आदमी लेटा हुआ है और लाल बत्ती भी वहीं --

बड़ा मंदिर का है यहां पर ऐसा मंदिर वगैरा भी है और यहां बहोत बड़ा पेड़ भी है।

उसके सामने बहोत सारी दुकाने हैं यहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो रहा है एक ओटो भी खड़ा है लगा --

ये एक स्विमिंग पूल है यहां पर बॉयज नहा रहे हैं स्विमिंग पूल में और यहां पर --

ये एक फ्रूट की दुकान है यहां पर आम केले संतरे ऑरेंज अनार वगैरा --

वहां पर उसके आगे सब्जियों की सब्जी भी बेचते हैं यहां पे और वहां दो बाइक भी खड़ी हुई --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

व्यक्ति है दिखाई जाती है और ये तीन चार मंजिल का सिनेमा बना हुआ है और यहां पर बहुत अच्छा नजर आ रहा --

का पोस्टर लगा हुआ है आइसक्रीम शेक्स वगैरा वनीला मिल गया स्ट्रॉबेरी चोकोबार बटरस्कॉच --

नाच के साथ लड़कियां है सामने गाउन पहना हुआ है और साथ में यहां पे गुब्बारे भी लगे हुआ हैं।

साफ सफाई अच्छे अच्छे पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं यहां पर और यहां का वातावरण बहोत अच्छा दिखाई दे रहा है।